यहाँ पर यह इतिहास का किला बना हुआ है।

यहाँ पर एक होटल बना हुआ है होटल के बाहर मेगा बाइट नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है होटल --

नीले रंग की तिरपाल टंग रही है और उसके बराबर में एक गेट भी है।

लडकियों के पीछे एक सफ़ेद रंग का पडदा लगा हुआ है।

पहाड़ों पर छोटे बड़े पेड़ पौधे --

रंग का विभिन प्रकार से सुसज्जित हैं और उसके उपर एक पानी की टंकी बनी हुई है।

यहाँ पर एक पार्क है पार्क में दो बत्तख चोंच से चोंच मिलाए --

दुकान के बाहर एक पिले रंग की और दूसरी सेफद रंग की स्कुटी खड़ी हुई है।

और वेल्डिंग करता हुआ दिख रहा है गाड़ी सफेद रंग की है।

मूर्ति के ऊपर कुछ फूल सुसर्जित हैं।

एक हजार रुपये का अर्थ दंड लिया जायेगा।

यहाँ पर जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं।

यहाँ पर एक बड़ी संस्थान है संस्थान के बराबर में --